यह एक महाविद्यालय है यह महाविद्यालय का नाम जंगल लाल चौधरी महाविद्यालय छपरा के है यह महाविद्यालय बहुत बड़ा है यह महाविद्यालय में बहुत सारे लड़के एवं लड़कियाँ --

सुन्दर है घुमने के लिए बहुत सारे आदमी यहाँ पे आते --

स्कूल में होती है यह स्कूल में बहुत सारे लड़के एवं लड़कियाँ पढ़ाई करने के लिए आते है यह स्कूल में बहुत सारे टीचर है अच्छी पढ़ाई इस स्कूल में --